और यहाँ पे कुछ जेंट्स लेडीज हैं।

और यहाँ पे छोटा-छोटा पेड़ भी लगा है।

और इधर में एक ठेला लगा है जिसपे कुरकुरा उरकुरा मिल रहा है |